रोड पे यहाँ पे बहोत सारे गाड़ीयाँ दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है पीछे आस-पास दुकान दिखाई दे रही है कुर्सी दिखाई दे रही है। पेड़ पे तार वगेरा खम्भे दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक खँडहर पुराना किला दिखाया गया है जो की बहुत शानदार तरीके से यहाँ से लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ है यहाँ पे खुला आसमान दिख रहा है।

यहां पे एक बहुत बड़ी गार्डन दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे उम टेबल कुर्सियां वगेरा लगी हुई दिखाई गई हैयहां बहुत सारे आस-पास पौधे दिखाई दे रहे हैं नीचे घास दिखाई गई है बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाए गए हैं बहो--

बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है इसमें बहुत सारे यहां पे बहुत सारी गाड़ियां रखी दिखाई गई है यहां पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाएं गए खुला आसमान दिखाए गए।